और ये नेट का रूपट्टा लग रहा है और उनके सामने पांच फादर लोग बैठे है पीछे मैं मूर्ति है यीशु भगवान का --